इस तस्वीर में मुझे एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ सजावट दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी दवाई दिखाई--

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।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

यहां मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे रहे--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

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।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

यहां मुझे एक घंटा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ घास दिखाई दे रही है।